और ये गौतम बुद्ध भगवान का मूर्ति है जो बहुत ही अच्छा-अच्छा माना जाता है।

यह बहुत बड़ी-बड़ी ईंटो से बनाया गया है।

बहुत ही अलग-अलग भगवान है हमको।

मे बहुत लोग रहते होंगे मेरे ख्याल से घूमने आते होंगे यह बहुत ही पिर्य दिख रहा हैं बहुत अद्भुत दिख रहा है।

-- जिसमें लोग सफर करते हैं इसमें मिडिल मिडिल क्लास रिच क्लास के लोग--

यहाँ बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते है घूमने करते है ट्रैवल करते हैं।

प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए--

जो दिलवा तूरा खाता है वो हरामी होता है नइ खाना चाहिए --

दो झन सोते है दो झन का बीछ्वना लगाया गया है।

किसी का कम किसी का ज्यादा हर एक टीशर्ट अलग-अलग कलर के है।

यह एक सोना या पत्तल पीतल का बनाया हुआ हैं।

जिस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती होगी।

और किरकेट खेलते होंगे मनोरंजन करते होंगे कंपटीशन करते होंगे--

जो किसी की सम्मानित को की टाइम पर फोटो खींचाए गया है।